ये एक लकड़ी का घर बनाया हुआ--

ढाबा है जिसपे लिखा हुआ शुद्ध वैष्णो शंबर ढाबा।

यहां ये एक शॉप है जहां पे आपको हर एक आइटम मिल जाती है जैसे की फेसवॉश नेलपेंट्स लिपिस्टिक ।

और साइड में ग्रीन ग्रीन ग्रास है।

और कुछ एक बस खड़ी है जो रेड रेड कलर की वाइट रेड कलर की--

ओर गमले के कलर अलग अलग तरह का है।

ये एक मिठाई की शॉप है जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको स्वीट्स मिल जाएंगे जिसका प्राइज जो है वो अलग अलग रहेगा।

ग्रीन साइड गार्डन भी बना हुआ है।

ये न एक आप देख सकते हैं ये एक शॉप है टायर की शॉप है जिसमें--

ये बेस्ट कंपनी मिल जाती हैं इसमें आपको दे--

भी रखा हुआ है टेबल्स भी हैं चेयर भी हैं लाइट्स भी हैं।